कुछ लोग बैठे हैं और एक पर एक औरत और एक जेन्ट्स --

ये सूंदर सी मूर्ति बुद्ध की मूर्ति लग रही है |

काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं।

और ये कपड़े सफ़ेद रंग के हैं धुले हुए।

शाम का टाइम है ये बहुत ही सुन्दर दिख रहा है ये नजारा --

कुछ फसल उगल हैं कोई खेत हैं या फिर कोई गार्डन या पार्क है पता नहीं।

पता नहीं ये कोन सी है ये डी.डी.ए. की --

तो इनमें से शॉपिंग करने के बाद कुछ परसेंट डिस्काउंट भी देते हैं।

एक शायद सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर खड़ा हुआ है |

और बच्चे बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हैं।

और यहाँ पर इसकी पीठ पर इसकी सिकाई चल रही हैं गरम ।

जब बारिश आएगी और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जायेगा तो इन इमारतों के अंदर भी पानी घुस जायेगा |

बाहर मकान के बाहर ख़ड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं |

किसी नदी या तालाब का है और --